ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर बाहर के साइड एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा हैं जिसपे कुछ पानी के बॉटल रखे हुये हैं कुछ डब्बे रखे हुए हैं जिसमे कुछ बिस्किट रखे हुए हैं यहाँ पर मिट्टी के गोल भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक डस्टबिन रखा हुआ हैं यहाँ पर एक लड़का खाड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

चार पिंक कलर की बॉटल्स रखी हुई है यहा पर एक ग्लास रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोग खड़े हुये है यहा पर एक आदमी चाय पिता हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके हाथ में एक रेड कलर का फोन है यहाँ पर ब्लैक चेयरस दिखाई दे रही है काफी सारा सामान रखा हुआ है साथ में कुछ लाइटिंग लगी हुई --

यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा हैं जिसने बैग टांग रखा हुआ हैं यहाँ पर कुछ सीढ़िया दिखाई दे रही हैं बैंक का गेट शीशे का बना हुआ हैं उसके ऊपर एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ--

आदमी के सामने एक स्टूल रखा है जिसके ऊपर एक वाटर कूलर रखा हुआ दिखाई दे रहा है इस यहाँ पे जमीन पे बहोत सारे बाल पड़े हुए हैं।

यहाँ पे एक आदमी खड़ा हैं जिसके हाथ मे एक व्हाइट कलर का पेपर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा हैं गड्ढे के अंदर बहोत सारे चौके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ हैं जिसने सरिया इस सरिये का पिलर पकड़ा पकड़ा हुआ है।

ये एक हैयर सेलून है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ फोटो क्लिक करा रहा है इस आदमी के पीछे एक बाल स्टूल रखा हुआ है स्टूल के ऊपर बाल्टी रखी हुई है आदमी के सामने दो आदमी बैठे हुये दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो अपने फोटो क्लिक करा रहे हैं जो पानी के अंदर खड़े हुए हैं यहाँ पर उनके पीछे एक नांव दिखाई दे रहे हैं नाँव मे एक आदमी दिखाई दे रहा है आदमी के पास एक बड़ा सा डंडा दिखाई दे रहा है।

सामने एक तराजू रखा हुआ दिखाई दे रहा है पास में एक और दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी बास्केट रखी हुई है।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

और एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के पास कुछ लोग बैठे हुए ए दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक आदमी कम्बल ओढ़ा हुआ बैठाउसके सामने एक बडा सा लैपटॉप रखा हुआ दिखाई दे रहा है।